जाए तो मस्त एक होटल बनी हुई है जहाँ पर अच्छे रंग-बिरंगे कमरे लगे हुए हैं जहाँ पर देखा जाए तो कुछ दीवालें बनी हुई हैं जहाँ पर कुछ गेट भी लगे हुए हैं।

एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहाँ पर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है जहाँ पर अच्छे-अच्छे झंडे तिरंगे लगे हुए हैं जहाँ पर कुछ खंबे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर मुझे हरियाली दिखाई दे रही--

और देखा जाए तो बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है जहाँ पर बहुत अच्छी से बह रही है यहाँ पर देखा जाए तो बहुत खतरनाक जंगल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर लिखा है उरगा पर्व यहाँ पर कुछ हरियाली दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ तार के तार दिख रहे हैं।